दीवारों पर लिखा हुआ है पुनिस कैफे काउंटर पर एक लड़की बैठा हुआ है।

एक मे ये गोल राउंड भी दिख रही है पीछे और भी खेलने की चीजें दिख रही हैं जैसे स्लाइड स्विंग और भी बहोत कुछ --

अलग अलग डिजाइन कलर और शेप के बेसिन और सेनेटरी आइटम लाइन अप है।

ये इमेज एक हार्डवेयर या कंस्ट्रक्शन मैटेरियल सप्लाई शॉप के अंदर का है।

यह फोटो योगा क्लास का है जहां पे कुछ औरतें योगा कर रही हैं।

दो औरतें योगा मैट के ऊपर खड़ा है जो पिंक कलर का है।

इस तस्वीर में मुझे एक छोटा सा ढाबा दिख रहा है जो खेर और बेम्बू से बना हुआ है।

खिड़की के ऊपर एक ट्यूबलाइट भी दिख रहा है आईना में एक फैन भी रिफ्लेक्ट कर रहा है।

पीछे दो दुकान दिख रही है एक पर मोमो लिखा हुआ है।

पीछे वॉल पर एक मोटिवेशनल कोट लिखा है।

पेट्रोल पंप की मशीन के सामने तीन चार व्यक्तियाँ खड़ा है आस पास पेड़ भी दिख रही है।

ये इमेज एक पार्क या कैंपस के गार्डन का है जहां एक व्यक्ति चल रहा है।

एक साइन बोर्ड भी दिख रहा है जहां पे चर्च लिखा हुआ है।

नीचे बहोत सारे ग्रास भी दिख रही है।

ये इमेज में मुझे एक ओपन वुडन घर दिखाई दे रहा है घर के चारों तरफ वुडन रेलिंग लगी हुई है।

मूर्ति को फूलों से सजाया गया है।

आसपास बहुत सारे लोग भी दिख रहे है ऊपर एक इलेक्ट्रिकल वायर भी दिख रहा है।

आगे की कंक्रीट ब्लॉक पर कुछ ग्रीन काई लगी हुई है पानी पर भी कुछ पत्ते दिख रही हैं।

ब्राउन कलर के चेयर भी रखे गए हैं आईना के पास एक रैक बना हुआ है जहां पर कुछ हेयर प्रोडक्ट रखे गए हैं।

शा का दरवाजा भी दिख रहा है जहां पे पुश लिखा है।

ये इमेज शॉप का है जहां मग को बहोत ही अच्छी तरीके से डिस्प्ले किया गया है।

मग पर कलरफुल और मॉडर्न प्रिंट है जैसे ज्योमैट्रिक पैटर्न फ्लावर मोटिव और कॉफी लिखे हुए टेक्स्ट ।

आसमान नीला और हल्का बादलों से घिरा हुआ है एक पेड़ की डालियां भी दिख रही है।

दुकान का फर्श सफेद कंक्रीट का है और दीवार पर रैक लगे हुए हैं यहां डब्बे रखे गए हैं।

ऊपर कुछ इलेक्ट्रिकल वायर भी दिख रही है।

ये तस्वीर एक कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाती है यहां कुछ मजदूर कंक्रीट सरफेस को लेवल कर रही है।

गाड़ी के साइड पर एक छोटा सा बैनर भी है जहां पर महेंद्ररा टाटा लिखा हुआ है।

के नीचे कुछ ग्रास भी दिख रही है।